ये आप देख सकते हो कुर्सियां भी रखी हुई हैं कुर्सियां ब्लैक कलर की हैं और पीछे दीवार सीधी पड़ी हुई है।

यहा श्री स्वामी कृष्न देव चिकित्सा लिखा हुआ है।

काले रंग के भी जूते है निले रंग के भी जूते हैं सफेद रंग के भी जूते हैं।

ये आप देख सकते हो यहां पे आसमान दिख रहा--

ये आप देख सकते हो यहां पे ओटो खड़ी--

और एक लड़की ने नीली चेक के कपड़े पेहन रखे हैं।

और यहां पे पर्दे लगे हुए है।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

सोनापुर ग्राम श्री मंडप लिखा हुआ है।

रक्षाबंधन है और यहां पे पोछी रखी हुई हैं। पोछी बहोत सारी पोछीं रखी हुई है। यहां पे टोटो लिखा--

भैंस भी है गाये भी हैं और यहां पे ये पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

ये आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारे आदमी बच्चे बैठे हुए हैं।

बच्चे ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं और नीचे सफेद रंग की पेंट पैंट पहन रखी है और यहां पे देख सकते हो आसमान ही आसमान दिख रहा--

यहां पर गाड़ी भी दिख रही है गाड़ियां भी खड़ी हुई है। यहां पर बहुत सारी यहां पर देख सकते हो--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

और यहां पे गाडी भी खड़ी हुई है और ये स्कूल कॉलेज दिख रहा है और यहां पे एअ हरियाली है।